किसी की याद में या मरने के बाद बनाया जाता है उसकी याद में।

बी कॉम एक ऐसा कोर्स है जो मेडिकल फील्ड में किया जाता है बी कॉम करने के बाद आप मेडिसिन की दुकान डाल सकते हो।

यहाँ पर आते है अपने बालों का ट्रीटमेंट करने के लिए और अपने स्किन का ट्रीटमेंट करने के लिए आते है।